घर के आगे के साइड में एक पथरा लगा हुआ है नीले रंग का। घर के ऊपर नाम लिखा हुआ है। कुछ सीढ़ियां दिख रही है।

एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा आंगन दिख रहा है रोड दिख रहा है।

स्टील के पाइप लगे हुए दिख रही है गैलरी दिख रही है गैलरी से --

एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है सफेद रंग का शर्ट पहना है नीले रंग की जीन्स हैं।

हरी हरी घास है कुछ पेड़ यहां पे दिखाई दे रहे--

आंगन में कुछ कुंडिया किनारो पे रखी गई है तोर बीच में पानी दिखाई दे रहा--

नीचे कुछ स्टील के ड्रम दिखाई दे रहे हैं रखे हुए उसके नीचे कुछ बाल्टियां दिख रही है प्लास्टिक की।

ये साइड की बिल्डिंगों की खिड़कियां खुली हुई दिख रही है खिड़कियों की--

सूखी पत्तियां दिखाई दे रही है पेड़ों की।

कुछ नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं कचरा है।

एक कपड़े का शोरूम दिखाई दे रहा है कपड़े के शोरूम के हॉल में ऊपर के साइड में कुछ लाइट लगे हुए हैं।

उसने काले रंग का कोट पहना हुआ है हाथ में बैग दिखाई दे रहे है मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

अलमारियों में कुछ किताब रखे हुए हैं किताब--

एक बड़ा सा हॉल यहां पे दिखाई दे रहा हॉल के ऊपर--

इधर के साइड में एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के साइड में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

ऊपर के साइड में लकड़ियों के कुछ टेबल दिखाई दे रहे है उसके ऊपर कुछ मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।